एक आदमी साइकिल से जा रहा है।

दो महिला रोड क्रॉस कर रही हैं।

तीनों के हाथ पे चूड़ियां है।

कोई लोग ऑरेंज दे रहे हैं तो कोई आलू।

एक चेयर नजर आ रहा है।

यह एक कार की तस्वीर है।

इस तस्वीर में बहोत सारे शख्स हैं।

यह ग्रे कलर का है।

तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है वह एक योग स्थान है।

यह तस्वीर एक रूम की है।

दो पौधा पूरा नजर आ रहा है और एक आधा।

उन तीनों ने सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

इशू मसीह का क्रॉस दिखाई दे रही है।

वहां पे एक लड़का खड़ा है।

बीच में हो रहा है।

शीशे का शेल्फ है यहां ब्रेड और केक रखे हुए है।

इस तस्वीर में एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है।

कुछ कमल खिला हुआ है और कुछ नहीं।

कुछ कमल के सूखे पत्ते नजर आ रहे हैं।

दीवाल का कलर व्हाइट है।

चार खिड़कियां दिखाई दे रही है।

मैरून कलर का टी शर्ट और ब्लैक --

दुकान पर चार कुर्सियां है।

ये तस्वीर एक दीवार की है।

दो पौधे टेबल के ऊपर है और एक दीवार पर।